यहां पर बहोत सारे ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक स्वीट्स की दुकान दिख --

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग खाना खाते हुए दिख रहे हैं।